शर्ट पैंट कई प्रकार के कपड़े हैं पुतले में भी कपड़े लगा के रखे हैं।

बहुत घासे हैं बहुत पेड़ है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मरो मनोरम दृश्य है ।

माँ दुर्गा बस मैजिक सेण्टर --

ओकरे बारे मे लिखल हेय रेड कलर के लाइटिंग हेय लाइटिंग बहोत अच्छा लगाएत हेय।

गम बनाया गया है घेर के वहां पे। बोहोत सारे छोटे-छोटे घासी हैं बोहोत हरी-भरी ।

बगीचा टाइप का है बीच में मैदान है। मैदान में घास भी बहोत जादा है। येही सब दिख रहा है ।

नीले रंग का डे-कलरिंग है इसमें और सीढ़ी नीचे से सीढ़ी लगी है जाने के लिए ।

अच्छा दिख रहा है सब डिजिटल ऑनलाइन पढाई उढ़ाई --

कबड्डी बच्चे खेल रहे है क्योंकि चॉक से खिंची है रेखाए।

और मशीने हर प्रकार के जिम करने का हर शाधन है यहाँ पे।

ऊपर पेड़ पीछे साइड पेड़ है । पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने से।

ये टिरी हुई है वहाँ पे ई रिक्शा --